स्टेज दिखाई दे रहा है यह स्टेज पे मुझे कुछ लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे है पीछे की तरफ बहुत सारा अँधेरा दिखाई दे रहा है यह रात का समय हो रहा है यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग पीछे भी दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में मुझे एक खुला एरिया दिखाई दे रहा है और यह खुला एरिया पे मुझे बहुत सारी घा घासे दिखाई दे रही है।

मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में मुझे एक नाव जाते हुए दिखाई दे रही है जोकि बहुत बड़ी नाव और छोटी नाव भी दिखाई दे रही है ये नाव कलर मुझे व्हाइट दिखाई दे रहा है।

शैम्पू के पाउच वेट मशीन और टेबल भी दिखाई दे रही है टेबल के अंदर बहुत सारी चीजे रखी हुई है टेबल के ऊपर बरनी भी दिखिए दे रहा है उन्हें देखने पर छोटी सी दुकान दे रहा है।